यह किसी नए-नए शॉपिंग सेंटर का जो की बहुत ही बड़िया से उद्घाटन किया गया है लाल सफेद गुबारे लगाये गए हैं फूल मालायें टंगी गई है।

यह फूलों की दुकान है जहां पे तमाम प्रकार के फूल आ फल भी रखे गए हैं टोकरियों में फल रखे गए हैं और इधर हम देख सकते हैं की रंग-बिरंगी बहुत ही अच्छे और सुंदर-सुंदर फूल रखे गए हैं।

ये सजाया गया है जो की बहुत ही शानदार लग रहा है बहुत ही प्यारा सजाया गया है इसपे बाहर एक बहुत ही अच्छी-अच्छी लगाई गई है चारों तरफ से घर को बहुत ही अच्छा बनाया गया है फूल-पत्ती लगा के इसको बहुत ही बेहतरीं ढंग से बना के सजाया गया है।

क्यूकी बहुत ही शानदार यहां पे लाइटिंग की व्यवस्था दी गई है जो की बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर फूल भी लगाये गए है डिजाइन बनाई गई है इसमे जो की बहुत ही शानदार और अच्छा लग रहा है लाइटिंग का पर्दा भी लग गया है इस --

इसका टोपी भी चेक कलर में है जिसपे बॉय लिखा है पीछे बहुत सी सामनें रखी गई हैं रंग बिरंगी ये रूम भी बहुत अच्छा बनाया गया है।

लोहे का लगाया जाता है ऊपर और उसके ऊपर से एक पर्दा डाला गया है हरे कलर का पर्दा है अंदर काफी लोग बैठे हुए है।

यह एक घर और मंदिर बना प्रतीत होता है | जिसके बाहर बहुत ही बढ़िया गेट लगाया गया है | अंदर लाल कलर का कपड़ा भी चढ़ाया गया है |

यहाँ पे एक छोटी-छोटी लाइटें लगाई गई हैं जुगनू जोकि बहुत ही प्रकार की लाइटें निकाल रहीं हैं इसको घर पे फूल मालाएं भी चढ़ाई गई हैं जो की बहुत ही अच्छा है यह घर सफेद रंग का बनाया गया है।

यह पहाड़ी इलाका है जहां पर छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं जिसके अंदर दो लोग घुसे हुए हैं एक आदमी उंगली का इशारा कर रहा है।